और दो विंडो दिख रहे हैं और उस--

और से बहुत अच्छे पेड़ लगे हैं इधर नारियल के और से घास भी बहुत अच्छी है बहुत अच्छा सीन दिख रहा है।

और गार्डन है हरी भरी घास है।

और शायद बहोत चार आदमी और हैं और एक ये रेड कलर की चेयर भी रखी गई है इधर--

जैसे कि मैं यहां पास देख पा रहा हूं कि एक ये सरकारी बस है।

पेड़ भी एक दिखाई दे रहा है पीछे साइड पे और से--

जैसे कि मैं इधर प देख पास रहा हूं कि एक ज्वेलरी शॉप है।

जैसे की मैं यहां पे देख पा रहा हूं की एक पानी का कैंटीन जैसे दिख रहा हैं।

अलमारी भी लगाई गई है इधर पे और वॉशिंग भी बाजू पर दिख रही है और लाइटिंग भी दिख रही हैं और--